और एक ग्राउंड है ग्राउंड बैठने के लिए एक टेबल लगे हुए हैं बहुत सारे पेड़ है पेड़ के नीचे वाइट पेंट किया गया है और गार्डन टाइप का लग रहा है और जमीन में बहुत सारी घासें उगी हुई है।

यहाँ पर एक खाटू श्याम टी सेंटर है बाहर मे बहोत सारे कंटेनर रखे हुए है एक पानी का जार है।

यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है उसके बगल मे बहुत सारे रेड कलर बैलून है ऊपर में भी बहुत सारे बैलून्स लगे हुए है ।

किसी मे राजा के मुकुट की है और किसी मे कुछ है और यहा पीछे मे एक ब्राउन कलर का और एक व्हाइट कलर जिसमे स्कुअर बना हुआ है। वो पर्दा है। जमीन मे पूरी टाइल्स है।

यह एक बार्बर शॉप हैं। यहाँ पर नाई बाल काट रहा हैं। बगल मे बहुत सारा सामान है इसके गर्दन के नीचे एक ब्लैक कलर कपड़ा से ढाका गया हैं। और यहाँ पर शीशा मे लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा हैं।